फोटो में कुछ छोटे और बड़े पत्थर दिख रही हैं और पानी भी दिख रहा है।

इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं और इसमें खंबा भी लगे हुए दिख रहे हैं खंभे पर बहोत सारे तार भी लगे हुए हैं।

इसमें कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही हैं।

मुझे कुछ पेड़ भी दिख रहे है ईंट भी दिख रहा--

और इसमें एक लाल रंग की लाइट भी है।

यह फोटो किसी धार्मिक स्थल का है जिसमें एक हाथी नहा रहा है।

उस हाथी के सूंड पर लाल रंग भी लगा हुआ है।

और एक आदमी हाथी के ऊपर डंडा लिए खड़ा है।

और पीछे पूल भी दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में स्टेज पर कुछ बच्चे फंक्शन कर रहे हैं।

और नीचे हरे रंग का मैट बिछा हुआ है।

और पीछे बहुत सारे जिम का सामान भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है।

इसमें दो आदमी भी दिख रहे हैं।

इसपे अर्मूद पर पन्नी भी बंधी हुई है।

नीचे हल्की हल्की घास भी हो रही है।

यह फोटो किसी समुद्र का है जिसमें पानी भरा हुआ है।

एक पुल भी दिख रहा जिस पर लोहे की ग्रिल --

और एक मोटरसाइकिल की लाइट भी हुई है।

और दुकान में नीचे फर्श भी किया हुआ हैं।

और रूम में लकड़ी की डोर लगी हुई है।

इस फोटो में एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसकी खिड़कियां खुली हुई है।

और बहुत सारे पोस्टर छपे हुए हैं।

दे रहा है और इसके हाथ में एक पीले रंग की मशीन है।

और इसमें एक दरवाजा भी दिख रहा है।

और इसमें हरा पाइप भी पड़ा हुआ है नीचे पत्थर भी बिछा हुआ है उसपर पानी भी हुआ है।

जिसमें बहुत सारा समान दिख रहा है।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

और एक छत पर खाट भी पड़ी हुई है।

और इसमें एक खंभा भी दिख रहा है।

और इसमें एक टंकी भी दिख रही है।

यह फोटो किसी रेस्टोरेंट के बाहर का है जिसमें कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें शीशे लगे हुए हैं।

पानी में हल्की हल्की लहरे भी दिख रही है।

इसमें झंडे भी लगे हुए हैं पीछे एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है।

और इसमें एक लेटने का पलंग भी दिख रहा है।

और इसमें कूड़े कचरे का लगा हुआ है।

इस फोटो में एक कमरा दिख रहा है जो बांस का बना हुआ है।

कुछ मोटरसाइकिले है कुछ पेड़ पौधे है इसमे लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

खंभा भी दिखाई दे रहा है इसपर लाइट लगी हुई--

इसमें एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

और इसमें कुछ मोबिल ऑइल के डब्बे भी रखे हुए हैं।

और इसमें कुछ झल्लर भी टंगी हुई है।